यहां पे कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही है और यहां भी काले रंग का --

ये एक गैरेज के दुकान दिखाई दे रही है यहां दुकान के अंदर बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

वहां पर दूसरी तरफ बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है टेबल चेयर दिखाई दे रहा हैं।

बहुत सारे यहां पे लाइट्स और खिड़की दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारी खेतियाँ दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारे हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे मोबाइल रिपेयर का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है और यहां दुकान के अंदर--

और यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है स्टोर के अंदर यहां पे बहोत सारी चीजे दिखाई दे रही हैं।

बोर्ड दिखाई दे रहे हैं रेड ग्रीन और यहां पे पिंक कलर के बोर्डस हैं और दूरी में बहुत बड़े बड़े झाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहां भी दो अलग-अलग डिजाइन की अवार्ड दिखाई दे रहे हैं यहां पे बहोत सारे यहां पे टेबल दिखाई दे रहे हैं और यहां पे --